फोटो में हमें दो आइना दिख रही है। फोटो में हमें कुर्सी दिख रहा है फोटो में हमें एक पंखा दिख रहा है। बाल बिखरे पड़े हैं।

कर्मचारी सामान को बोरे में भर रहे हैं। कुछ कर्मचारी कोयले तोड़ रहे हैं।

मेहमान बैठे हुए हैं। कुर्सियाँ लगी हुई है । स्टेज लगी हुई है।

इस ईस्कूल में बच्चे छाया में बैठे हुए है धुप से हटकर।

यह पिक्चर एक नदी की है जिसमें पानी बोहोत कम है।

इस पिक्चर में हमें एक स्टेज दिख रहा है जिसपर जयमाल होने की तैयारी हो रही है।

यह पिक्चर मेले की है। मेले में लाइट वाइट लगी हुई हैं।

जिसमे गाड़ियाँ तेल भरवाने जाती है इस पिक्चर में हमें दिख रहा है कि कुछ कर्मचारी गाड़ियों में तेल भर रहे हैं।

लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं पैसे निकालने के लिए।

कोस के बगल में हिंदी में लिखा हुआ है मै प्यासा हूँ।

बहोत अच्छे से सजाया हुआ है।

यह फोटो एक स्कूल की है। स्कूल का नाम है सरस्वती विद्या मंदिर जो कि इंटर स्कूल है।

धीमा लाइट जल रहा है।

गिट्टी दिख रही है और बोहोत सारे कंस्ट्रक्शन के सामान दिख रहे हैं।

यह फोटो एक क्लासरूम की है। इस क्लासरूम में बहोत सारे बेंच --

एक आदमी लेटा हुआ है और दूसरा आदमी उसके पैर की मसाज कर रहा है।